जैसा की अपने को नजर आ रहा है की एक गली बनी हुई है गली के ठीक पास में एक स्कूटी है जो की स्कूटी जो की डिजायन वाली दिख रही है पिली कलर की स्कूटी है।

गमले के ठीक पास में देखा जाए तो एक खिड़की लगी है जोकि जाली नजर आ रही है। जाली के ठीक नीचे एक आदमी है आदमी जोकि खड़ा हुआ नजर आ रहा है आदमी के ठीक पास में देखा जाए तो कई सारे लोग हैं।

इसमें पास में बड़ी सी दीवाल बनी हुई है दीवाल की ठीक पीछे के साइड में बड़ी सा घर बना हुआ है घर जो कि पत्थरो का बना हुआ है इसके ऊपर एक पीले कलर का कलर किया हुआ है इसके ठीक पास मे देखा जाये तो कई सारे घर है उस--

इसमें यू नजर आ रहा है कि ये एक जंगल है जंगल काफी बड़ा काफी फेला हुआ नजर आ रहा है जंगल के पास मे छोटे -छोटे झाड़ लगे हैं झाड़ों के ठीक पीछे के साइड मे देखा जाए तो बड़ा-सा पर्वत है।

पर्वत जो की काफी बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर कई लोग कैम्प लगा हूआ है कैम्प जो की ब्लैक कलर लगा है कैम्प के आगे ठीक लोग बैठे हुए है लोगों के ठीक पास में बैग रखा हूआ है बेगों के ठीक पीछे के साइड में देखा जाए तो कई सारे लोग हैं।

देखोगे ठीक पीछे से एक कैम्प है कैम्प में दो आदमी नजर आ रहे हैं आदमी ने कपड़े पहने हुए हैं उसके ठीक पीछे बड़ा सा पर्वत है पर्वत काफी बड़ा और काफी फैला हुआ नजर आ रहा है। पर्वत--

जैसा की अपने को नजर आ रहा है की ये एक पर्वत है पर्वत के ठीक पास में देखा जाए तो छोटे छोटे झाड़ है लगे हुए झाड़ो के पास में कई सारा सामान रखा हुआ है। सामानो के पास में छोटा सा केम्प लगा हुआ है।

जैसा की अपनों को नज़र आ रहा ये एक कार कि तस्वीर है कार कि तस्वीर जो कि ठुक चुकी है एसा लगता है की बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो चूका है या इसके कई सारे पार्ट जो की ओपन हो चूके है |

जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक तीन दुकान बनी हुई हैं तीन दुकान जो कि एक टायरों की नज़र आ रही है टायरों की दुकान के पास में देखा जाए तो बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड --

जहाँ पर टायर लगे हुए टायरो के पास में दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे हैं अदमीयों के ठीक पास में देखा जाऐ तो एक बड़ी सी टाईलों रखी हुई है। टाईलों के ठीक पीछे के साईड में देखा जाए तो लोहै की जलियाँ लगी--

जैसा की अपने को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक गाडी खड़ी हुई है गाडी के ठीक पीछे के साईड में एक बड़ी सी दुकान है दुकान के ठीक पास में देखा जाए तो कई सारे कांच लगे हैं काचों के ठीक पास में एक छोटी सी गुमटी है।

अपने को नज़र आ रहा है कि एक बड़ा सा शो रूम जो की कार रिपेरिंग का शो रूम नज़र आ रहा है उसके ठीक पास में देखा जाए तो वाईट कलर की पन्नी पड़ी हुई पन्नी के ठीक ऊपर चदर लगा हुआ है ये चदर काफी बड़े नज़र आ रहा--

जेसे को अपने को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पर्वत और झाड़ बने हुए हैं यहाँ पर कई बड़े-बड़े पर्वत हैं जो की बहुत बड़ा जंगल नज़र आ रहा है जंगल के पास में छोटे-छोटे घर बने हुए नजर आ रहें हैं जहाँ पे झोपड़पट्टी लगी हुई है।

नजर आ रहा है कि यह पे ऊपर चद्दर लगी हुई है चद्दरों की ठीक ऊपर के साइड में लोहै की एक वो लगी हुई है उसके ठीक ऊपर दो खिड़की लगी हुई है खीड़की के नीचे एक बड़ा-सा शोरूम है ये कार का शोरूम नजर आ रहा है यहाँ पर कई सारी कार खड़ी हुई हैं।

जैसा कि आप लोगो को नज़र आ रहा है की पीछे की साइड में एक रोड बना हुआ है रोडो के पास में एक छोटा सा गेरिज नज़र आ रहा है वहाँ पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है करो के ठीक नीचे एक बड़ा सा गड्डा नज़र आ रहा है।